यह फोटो एक किले का है।

यह कीला बहोत ज्यादा पुराना है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

यहाँ पर बहोत सारे लोग हैं।

यहां पर लड़कों के कपड़े मिलते हैं।

यहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

एक फोटो है यह फोटो बहुत सुंदर लग रहा है।

यह साइकल किराए पर ली जाती हैं।